जैसा कि आप सभी इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहां एक बहुत बड़ा हॉल है और यहां की कुर्सियां और टेबल लगे हुए हैं।

और इसके अ आगे एक व्हील चेयर है।

रोड के इस चारों तरफ हरियाली है और--

और उसके अंदर बहोत सारे पेड़ पौधे और कुछ कुर्सियां भी र--

अमारोन इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसके बगल में एक रूम है जहां की रेस्ट हाउस लिखा गया है।

और उसे टेबल पे अ बहोत सारे कार्टून रखे हुए हैं छोटे छोटे मूर्तियां हैं और एक पेड़ है।

और इसको रिबन से और बैलून से इसकी छत को सजाया गया है और चारों तरफ गुब्बाड़े लगे हुए हैं।

और जहां बोर्ड पे इंग्लिश अक्षर में कुछ लिखा हुआ है।